और यह देखने में बहुत ही अच्छा और सुन्दर लग रहा है। यहाँ बहुत ही आदमी पुस्त --

कॉफी लेके आदमी को देते हैं और यहाँ बहुत स्वादिष्ट और अच्छा कॉफी चाय मिलते हैं और यहाँ बियर --

नदी में बहुत सारे नाव चलते हैं और ये नाव देखने में बहोत ही सुन्दर और अच्छा लग रहा है। नाव में बहुत आदमी सैर करते हैं। बहुत ही मछुआरे लोग मछली पकड़ के अपना गुज़ारा भी करते है। नाव से --

और इसके बगल में जंगल भी है। जंगल मे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यह देखने में बहुत ही हरियाली और सुन्दर लग रहा है। पेड़ पौधों से हमें --

बोहोत स्कूल के बच्चे हो। उम्म बोहोत ही स्क स्कूल के बैग यहाँ मिलते हैं।

आते हैं और यहाँ बोहोत ही सारे बृछ पोधे-पेड़ लगाये गये हैं और देखने मे बोहोत ही हरयाली और सुन्दर लग रहा है।

यह एक पहाड़ का फोटो दिखाया गया है। पहाड़ देखने में बहोत ही सुन्दर और अच्छा लग रहा है।

ये मूर्ति को बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया है।